साइड में टावर पर एक लाइट जलता हुआ दिखाई दे रहा है।

उस जमे पानी के ऊपर बस चलता हुआ कार चलता हुआ दिखाई दे रही है।

कांडला एयरपोर्ट के फुटपाथ के ऊपर लिखा है। वेलकम टू कांडला एयरपोर्ट ।

बिल्डिंग में सुभाष ज्वेलरी का दुकान भी दिखाई पड़ रहा है।